बजरी रेत खिंडा दिखाई--

और उस मकान के--

ट्रक खड़ा है जिसपे लिखा हुआ है पी --

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

पीछे एक बिल्डिंग है।

सामने कुछ पाइप की नलकिंया पड़ी हुई हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई--

सामने एक मारुति शोरूम दिखाई--

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे --